ए देखिए ए स्कूल है जिसका नेम है सिटीज अ होनोर ऑफ द कोंसेंट जो कहा है सोलापुर मे।

और ये देख सकते है पार्क मे काफी नेट वगेरा और ये पुरा पैक हुआ है। और ये पार्क है काफी अच्छा है। देखो इसमे पुर--

ये सोलापुर का शोरूम है ये देखो गाड़ियों का शोरूम है काफी अच्छी गाड़ियां यहा पर खड़ी हुई है देख सखते हो जो की ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी है और एक खड़ी है तवेरा और जो देख सखते हो ये यहाँ का शोरूम है।

ये स्पोर्ट शॉप है। जो कि सोलापुर कि शॉप है। आप देख सखते है। ये सोलापुर कि शॉप है। काफी बड़ी है।